है हमें खेल का मैदान लग रहा है जिसमें स्टेडियम में एक लड़का बैठा हुआ है बैग लेके और कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं।

और यहां फुटबॉल खेलने का भी दिया है और यहां पर कुछ लोग स्टम्प लगाकर क्रिकेट खेल रहे। यहां पर लाइट भी लगी हुई चारों तरफ बहुत हरियाली है। यहां पर सफेद कलर का पेंट बोहोत अ --

है यहाँ बहुत हरियाली है यहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुआ है देखने मे एक स्कूल जैसा लग रहा है जिसमे एक बच्चा खेल रहा है और पीछे एक बिल्डिंग है और इसमे एक खंबा लगा हुआ है। यहां --

और बादल मे इन्द्र-दे जैसा बना हुआ है ये देखने मे काफी अच्छा लग रहा है।

इसमें धूम्रपान निषेध लिखा हुआ है और एक नीले कलर में बीड़ी सिगरेट छुपी हुई है नो स्मोकिंग लिखा है लाल पोस्टर चिपका हुआ है उसे पर लिखा हुआ है परशुराम की आतिशबाजी पटाखे के थोक विक्रेता देखने में बहुत अच्छी लगती है

और इसमे फूलों की माला लगी हुई है एक लड़की खड़ी हुई है इसमे एक कुर्सी रखी हुई है एक डस्ट्बिन रखा हुआ है देखने मे बहुत अच्छा लगा रहा है।

क्रीम कलर की इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है उपर सूरज भगवान उग रहे हैं यहा पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं यहा पर कुछ लोग बैठे हुए हैं कुछ लोग खेल रहे हैं और यहां पर स्टेडियम बना हुआ है।

यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है रेड कलर का और इसमें लिखा है सब्सक्राइब क्राइम जेल और इसमें च इसका एक बिल्डिंग का पेंट भी एक नंबर लग रहा है। यहाँ पर तार लटक रहे है देखने में बहुत --

और एक रेलिंग पर फूलों की माला लगी हुई है। एक गमला रखा हुआ है सिडिया है नीचे नीले कलर का गेट लगा हुआ है बाहर हम को पत्थर दिखाई दे रहे है खेत दिखाई दे रहा है एक पेड़ दिखाई दे रहा है नीचे बहार --

इसका कलर भी हमें बोहोत अच्छा लग रहा है। इसमें तीन गुंबड बने हुए हैं। माइक लगे हुए हैं। छतरी लगी हुई है। एक जाली लगी हुई है। एक गेट दिया हुआ है। यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है।